लैट दिखाई दे रही है छातो पर सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है अभी इधर में एक आदमी दिखाई दे रहा है सफेद रंग की टोपी लगाई हुई मोबाइल पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके मुंह पर मास्क लगा।